सब कुछ हरा भरा दिखाई दे रहा है देखने में बोहोत सूंदर लगता है।

यहाँ एक हरे आ वाइट रंग के पाइप भी है अकास आ वाई वाइट रंग का है।

दरवाज़े बहुत प्यारे नक़्शे दिखाई दे रहे है शिल्प के ये स्तम्भ बहुत प्यारे नक़्शे हुए है।